यह एक डेयरी पार्लर है । यह डेयरी पार्लर विकास डेयरी पार्लर है । यहाँ पर --

डेयरी जैसी चीजें यहाँ पर दूध दही घी क्रीम आइसक्रीम चॉकलेट यह डेयरी पार्लर में मिलती हैं।

यह एक गेट है यह गेट को लगाया जा रहा है यह गेट लोहे का बनवाया गया है।